सामने सफ़ेद बादल काले बादल दिखाई दे रहे हैं कुछ पे- कुछ पत्तिया अटकती हुई दिखाई दे रही हैं बड़ा खूबसूरत प्रकृति का नजारा दिख रहा हेे।

उस सामने पेड़ पौधे लाइन से दिखाई दे रहे हैं आसमान का रंग हमें ब्लू सा हरा हरा रंग दिखाई दे रहा हैं पानी मैं बुल-बुले भी दिख रहे हैं।

लाल और सफ़ेद दिखाई दे रहा है बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा हैं बड़ा दिखने में बड़ा ख़ूबसूरत हैं।

यहाँ एक टावर भी लगा हुए हे निचे बहुत सारि दुकाने दिखी दुकानों के बहुत सारे टेरेस बिल्डिंग पे लगे हुए है सामने बहुत सारी गाड़िया सफेद लाल ये दिखाई दे रही है दुकानों के पास पड़े पौधे भी उगे हुए दिखाई दे रहे हे सफ़ेद आसमान भी दिख रहा है।

टेबल भी दिखाई दे रही हैं इसका फर्श सफ़ेद दिखाई दे रहा हैं इसकी दीवारे कत्थई रंग की दिखाई दे थोड़ी दूर पेपर गोल्ड कलर का पिलर दिखाई दे रहा हैं।

कुछ टू व्हीलर हैं कुछ चार व्हीलर भी दिखाई दे रहे हैं जहाँ कार सफ़ेद कलर की दिख रही हैं उसके पास मैं एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं आसमान सफ़ेद दिख रहा हैं पेड़ भी दिख रहे हैं।

इस चित्र के अंदर एक बड़ा सारा सा घर दिख रहा हैं जिसकी जालिया सफेद कलर की और पीले रंग से पूता हुआ दिखाई दे रहा हैं उसके निचे दो मंजिला दूकान दिख रही हैं काँचो मे- काँचो से बनी हुई दिख रही हैं उसके ऊपर पोस्टर लगे हुए हैं।

कुछ लोग व्यक्ति एक व्यक्ति दुकान के बाहर खड़ा हुआ दिख रहा हैं वह लाल डब्बा भी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं।